और यहां पर कुछ सीढ़ियां हैं।

यहां पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर सामने एक कमरा है।

यहां पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं और यहां पर --

और कुछ बच्चे खड़े हैं आसपास बहुत सारे--

यहां पर सामने कुछ मूर्तियां रखी गई हैं।

और यहां पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं।